यहाँ पर तीन लोग दिखाई दे रहे हैं एक लड़का एक बच्चा और एक लड़की।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।

और पीछे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

बिल्डिंग के सामने गाड़ियां रखी हुई है।

बिल्डिंग के ऊपर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जैसे की पतंजलि के यूनियन बैंक के।

पीछे एक लाइट का खंभा दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक शॉप दिखाई दे रही है।